और बहुत से लोग कनस्तर के पीछे भी खड़े हुए हैं।

भिंडी शिमला मिर्च खीरे बैँगन तोरई गाजर करेला टमाटर --

जिसके ऊपर की दिवार सफ़ेद रंग की और बीच की दीवार हल्के बेगनी रंग से रंगी गई है।

ये एक बहत बड़ी किराना की दुकान है।

कुछ पे फ्रॉक कुछ पे सूट घाघरा और कुछ पे छोटे बच्चो के कपड़े लगे हुए हैं ।

जो की सफेद रंग की है।

यहाँ बहुत सारे पुतले लगे हुएं --